और कुछ चार सर्टिफिकेट टंगे हुए दीवाल में।

यह एक वाटरफॉल है जिसमें पानी बहता हुआ दिख रहा है।

एक व्यक्ति गुलाबी कलर का शर्ट पेहन के--

देखने से यह एक सेमिनार हॉल लग रहा है।

उनके भी नीले कलर का एक--

यहां पे कई सारे एनिमल हैं।

और इक फैन है जिनका व्हाइट कलर है।

नहाने के लिए पत्थर के ऊपर खड़े हुए हैं।

पेड़ हैं आसमान है पानी अच्छा दिख रहा है।

और लाईट्स लगे हुए हैं एक व्यक्ति हैं जो व्हाईट कलर का शर्ट पहना हुवा हैं।

व्यक्ति है का कलर पीला कलर एक व्यक्ति--

देखने से यह खिलौने का दुकान लग रहा है।

देखने से यह एक खेत लग रहा है।

देखने से यह एक आंगनबाड़ी लग रहा है।

ये जिसमें पेड़- पौधे है कुछ कुर्सियाँ है कुछ ग्लास के दरवाजे हैं।

देखने से यह एक एच_डी_एफ_सी बैंक जैसा लग रहा है जिसमें गार्ड्स है कुछ--

आस पास गाड़ियां खड़ी है।

कई सारे लोग नहा रहे है जिसमें एक व्यक्ती--

देखने से यह एक ज्वेलर्स लग रहा है जिसमें कई सारे टेबल हैं टी_वी है।